यह एक डामर वाला रोड है और बरसात के समय में इस फोटो को लिया गया है अभी-अभी पानी--

अमन गमन कर रहे हैं आना जाना और वहाँ ही खड़े हैं--

पुस्तक कॉपी का दुकान है किराना स्टोर या अनलाइन सेंटेर होगा यहाँ एक लड़का जो है बैठा हुआ है अपने चाय में कुर्सी में और चश्मा लगाया हुआ फोटो खींचा रहा है और यह एक कुछ माल भी पहना हुआ है लाल कलर का धागा है पीछे पुस्तक है।

यहाँ कुछ आदिकालीन कुछ मु कु फट मतलब मूर्ति लगा हुआ है यह आदिकालिन मूर्ति है यह हजारों दो सौ सालों पुराना है और यह--

यहाँ एक गाड़ी पार्ककिंग जगह बनाया गया है और गाड़ी को धूप न लगे कह के इसमे लोहे का एंगल फीट का ऊपर एलबेस्टर प्लास्टिक लगाया गया है जो--

यह एक मंदिर है यह बहुत पुराना मंदिर है मंदिर में कुछ डिजाइनस बना हुआ है कुछ चित्रकार भी दिख रहा है कोई नित् नृत्य करते हुए --

थोड़ा-थोड़ा गिर रहा है और बहुत सुंदर दिख रहा हैं ।